बगल में घर है जो सफेद रंग की है।

जाली लगी हुई है कुछ लोग बाहर खड़े हुए है।

जो शो पीस पत्ती हैं।

दो लेडीजीस खड़ी हुई जो सलवार शुट पहने हुई है और जिस --

हरे रंग के पत्तियां लड़के ने काले रंग का लोअर और लाल रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है।

सामने एक साइड पे एक मस्जिद--

जो पिछे के साइड पे दिवाल पे लाइट हुई है सफेद रंग की--